जिस पे रेड कलर से पेंट किया गया --

यहाँ पे काफी लोग बैठे हैं और खाना खा रहे हैं | आदमी लोग खड़े हुए हैं ।

एंड ऊपर जो वाल का कलर है वह पूरा वाइट है एंड --

सामने यहाँ आस वाले घर मे लकड़ियां कटी हुई रखी हुई है सुखी वहाँ एक आदमी खड़ा है ।